और इस गार्डन मे हरे भरे से पेड़-पौधे और ज़मीनों पर घास भी लगे हुए नजर आ रहे है ।

मुझे यहा पर एक बहोत बड़ी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है जिसका कलर ग्रीन और ऑरेंज है और इस बिल्डिंग में बोहत सारी मूर्तियाँ भी लगी हुई है ऊपर में।

यहाँ पर मुझे एक कार नजर आ रहा है। और ये कार का गेट भी खुला हुआ है दोनो ।

अंदर मे आदमी नजर आ रहे है और इस एटीएम के बाहर मुझे दो आदमी नजर आ रहे है जो यहाँ पर वेट कर रहे है एक हेलमेट लेकर।

मुझे यहाँ पर बहुत बड़ा-सा दरिया नजर आ रहा है जो बहुत सारा पानी भरा हुआ है।

इस क्लासरूम मे बोहोत सारे फेन्स भी लगे हुए हैं और लाइटे भी लगी हुई है। और इस क्लासरूम मे बोहोत बड़े-बड़े बेंच है और सब जगह पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। और आगे मे एक पोस्टर लगा हुआ --

और इस बोट मे मुझे कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो सेफ़्टी के लिए अपना जैकेट पहने हुए हैं । और ये बोट व्हाइट कलर का है। और इस बोट मे बोहोत सारे बांस लिए हुए है।

और इस मे गाँव मे मुझे बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। जो औरतें बच्चे सब यहाँ पर बैठे हुए मुझे नजर आ रही है। ओर ये लाइटो से सजी हुई है।